और छोटे छोटे घर बन सफ़ेद कलर का पिला कलर का पेड है हरे कलर के हैं नीले कलर के

और ब्लू कलर है लाल कलर है और सूरज निकल रहा है बिल्डिंग है सफेद कलर की ब्लू कलर की है।

बना हुआ है और एक टी_वी लगी हुई है काले कलर की बायर है।

और एक छाता है लाल कलर का और सफेद कलर का है कांच लगा हुआ है।